हमें एक ऑफिस या कपड़े की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें --

यहा हमे मारबल के पत्थर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक बहुत बड़ा पट्रोल पंप भी है। साइड में गार्डन टाइप का बना हुआ है।

सामने एक कार खड़ी हुई है पेट्रोल पंप के पीछे पेट्रोल पंप का व्यू दिखाई दे रहा है उसके पीछे बहोत सा --

यहाँ पर एक पहाड़ी के बीच में से झरने के रूप में जल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक ऑफिस दिखाई दे रहा है जो की कांच का कांच लगे हुए हैं जैसे --

क्योंकि पिल सफेद और नारंगी रंग की दिखाई दे रही है।

एक रोड दिखाई दे रहा है रोड के साइड मे एक सइकिल खड़ी हुई है साइड मे बहोत सारी हरी भरी जगह भी है।